और एक प्लास्टिक का कुर्सी रखा हुआ है जो रेड कलर का है।

अ उसमें कुछ कागज है जो चिपकाए हुए है छोटा सा स्विच है जो एक बल्प जल रहा --